इस तस्वीर में सामने बहुत सारे लोग का डम्मीस बना दिखाई दे रहा है जो संगीतकार है।

तस्वीर मे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सामने आग भी जल रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है। जिसका नाम अजंता डेयरी है।

बहुत सारे लोग बैठ कर हैं और कुछ लोग साइकिल ले कर हैं।

इस तस्वीर में समाने एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे जमीन पर बहुत सारी घास उगी है।

वहीं सामने दो व्यक्ति खड़ा है। एक ब्लैक टी-शर्ट पहनकर और एक शर्ट पहनकर हाथों में फोन लेकर तस्वीर खींच रहा है।